मूर्ति में बहुत सारा फुल टांगा हुआ है।

एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं।

घर के ऊपर एक पोस्टर लगाया हुआ है।

पोस्टर पर रवि फुल सेंटर लिखा हुआ है।

फूल का कलर लाल कलर का है।

अक्खल में बहुत सारा सीढ़ी बनाया हुआ है।

पानी का कलर वाइट रंग का दिखाई दे रहा है।

मंदिर के बाहर बहुत सारा आदमीन है।

यह एक बहुत बड़ा घर है।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

दुकान में बहुत सारा आदबीन भी है।

और बहुत सारा आदमी बैठे हुए हैं और खड़ा हुए हैं।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

नींबू का कलर पीला और हरा रंग का दिखाई दे रहा है।

फैक्टरी को बहुत बड़ा बोनडरिंग किया हुआ है।

पोल में टेसफार्मर लगाया हुआ है।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

यह एक बहुत बड़ा दुकान है।

दुकान के बाहर करकट लगाया हुआ है।

और एक रोड भी दिखाई दे रहा है ।

यह एक बहुत बड़ा कॉलेज है।

यहां एक बहुत बड़ा थाना है।

फायर स्टेशन डालटेनगंज पलामू।

यह एक घर है घर में काउंटर लगाया हुआ है।

घर में आदमीन भी हैं।

आसमान में वाइट कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

दुकान में लाइट जल रहा है जो सफेद कलर का है।

अस्पताल के बाहर बहुत सारा बाइक लगाया हुआ है।

और बहुत सारा लाइट जल रहे हैं जो सफेद कलर का है।

यहां बहुत सारा लड़की डांस कर रही है।

और घघरा पेहन कर डांस कर रही है।

एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

दुकान में बहुत सारा काउंटर लगाया हुआ है।

काउंटर में बहुत सारा डिब्बा रखा हुआ है।

दुकान में बहुत सारा टाइल्स लगाया हुआ है।

यहां मशीन रखा हुआ है जो ब्लैक कलर का है।

ए_आर_सी लिखा हुआ है वाइट रंग से।